यहां पर बहोत सारे घोड़े दिख--

नाइनटीन फोर्टी नाइन भी लिखा हुआ --

आदमी दिख रहा है।

डस्टबिन का रंग हरा है यहां पर।

टेबल कुर्सियां रखी हुई है यहां पर सफेद--

यहां पर एक आदमी सेल्फी ले रहा है।